कुछ सामान बिखरा हुआ दिख रहा है एक कारपेट भी दिख रहा है।

कुछ पेड़ भी दिख रहे है।

दो आदमी भी दिख रहे हैं जो बैठे हुए हैं।

आ रहा है जहां पर एक झोपड़ी भी--

गार्डन का चित्र दिख रहा है।

एक कार व्हाइट कलर की है एक कार ग्रे कलर की --

नीले कलर की बहुत सारी टेबल कुर्सियां--

कपड़ों की दुकान दिख रही है। दो डमियां भी दिख रही है।

बहोत सारी गाड़ियां भी दिख रही है।

इस चित्र मैं हमे दो सोफे --